लोगो चल रहे हैं और उसके पास में एक पुरानी इधर घर जैसा बना हुआ और इसके पास बहुत ज्यादा दर--